यह एक फंक्शन का फोटो है जहां पर दो आदमी बैठे हुए हैं।

एक ने प्लेन व्हाइट शर्ट और दूसरे ने प्रिंटेड वाइट शर्ट पहनी हुई है।

यह एक आदमी का फोटो है जिसने --

और पीछे रेड कलर के बैलूंस लगे हुए हैं।

यह फोटो एक मंडी का है दिन का समय है काफी भीड़ लगी हुई है।

काफी लोग मछली खरीदने आए है।

ये लोग अपने सामान की खरीदी कर रहे हैं।

जहां खाने पीने का सामान जैसे केला और अन्य घरेलू चीजें मिलती हैं।

दुकान के ऊपर एयरटेल फोर जी का बोर्ड लगा हुआ है जिससे यह पता लगता है कि --

यहां मोबाइल रिचार्ज भी किया जाता है।

पेपर क्राफ्टू बनाए गए हैं और --

इस फोटो में एक टोयोटा कंपनी की कार खड़ी हुई है जिसका नाम इनोवा है।

गाड़ी का यू_पी सिक्स फाइव बी बी सेवन थ्री नाइन थ्री है।

ये फोटो एक म्यूजियम का है जिस पर नीले कलर की दीवार है एक मैप का पोस्टर चिपका हुआ है।

कई सारी मूर्तियां ग्लास फ्रेम के अंदर सजा रखी है।

यह एक किराने की दुकान है जहां पर दो आदमी खड़े हुए हैं।

एक ने ब्लैक व्हाइट चेक शर्ट पहनी है दूसरे ने व्हाइट चेक शर्ट पहनी हुई है।

ये दो आदमी और एक लड़की बैठी हुई है।

यह एक कार्यक्रम का फोटो है।

उसी का रंग लाल हैं और सीलिंग पर कई सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

एक आदमी ने सफेद कलर के पाइप हाथ में ली हुई है।

और पीछे एक आदमी ने ब्लू चेक शर्ट पहनी हुई है।

यह फोटो एक कार गैराज का है जहां पर दो कार सर्विस के लिए आई है।

उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

एक का रंग लाल है दूसरे का रंग सफेद और नीला है।

अपने टीचर की बात सुन रहे हैं टीचर ने लाल रंग की टी शर्ट और सफेद रंग की पेंट पहनी हुई है।

यह फोटो एक फ्लाईओवर के नीचे की रोड का है जहां पर एक आदमी अपनी बाइक से जा रहा है।

और उसके पीछे लाल कलर का बैग रखा हुआ है दूसरा आदमी अब --

के पीछे दो लड़कियां बैठी हुई है जिसके गाड़ी का नंबर टू फोर जीरो जीरो है।

उसके ऊपर कांच के बाउल मे --

एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है।

ट्रेन मालगाड़ी आ रही है और उसके ऊपर एक ब्रिज है।

यह फोटो एक नाई की दुकान का है।

यहां पर तीन काले रंग की सीट लगी हुई--

यह एक टी शर्ट पहने है चट्टान को हाथ लगा रहा है।

क्या फोटो एक संगीत कार्यक्रम का है जहां पर दो औरतें और एक आदमी बैठा हुआ है।

एक औरत ने हाथ में वीणा ले रखी है।

दूसरे आदमी ने ढोल ले रखा है और तीसरी औरत गाना गा रही --

यह तस्वीर जिंजी किले की है जो तमिलनाडु में स्थित है।

चोल राजवंश के द्वारा हुआ था।

यह एक बनते हुए मकान का चित्र है जहां पर आर_सी_सी डल रही है।

ए_टी_एम मशीन यूज कर रहे हैं और दूसरा एक आदमी --

ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने बाहर जा रहे है दरवाजे पर एस_बी_आई बैंक के पोस्टर लगे हुए है।

जो एक नदी या झील के किनारे खड़े हुए हैं।

यह फोटो एक कारखाने या वर्कशॉप का लगता है जहां पर --

इन पुर्जों का मुख्य आकार चौकोर व लंबा पाने की तरह है।

यह फोटो एक कोयले के गोडाउन का है जहां पर कई सारे --

और दो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं रेड और येलो कलर के जिस पे --

यह फोटो एक पार्क का है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।

फाउंटेन को रिकॉर्ड कर रहा है अपने मोबाइल से।

यह फोटो एक स्टेशनरी की दुकान का है।

यह एक बस स्टैंड का फोटो है जहां पर तीन बस --

खड़ी हुई है तीनों का रंग सफेद है।

यह एक एनुअल फंक्शन का फोटो है जहां पर --

साड़ी की दुकान की फोटो है जहां पर --

व्हायलेट कलर की साड़ी बिछी हुई है और उसके ऊपर--

ब्लू पिंक ग्रीन एंड रेड कलर की साड़ी--

रिक्शा खड़ी हुई है और गुलाबी और सफेद रंग के --

यहां सामने एक सड़क जा रही है जिसमें व्हाइट कलर की ओल्ड फैशन की कार खड़ी हुई है।

उसके सामने एक आदमी फोन पे बात कर रहा है ब्लैक शर्ट --

यह फोटो एक दुकान का है।

जिसमें एक आदमी सफेद शर्ट पहेनकर खड़ा हुआ है।

यह एक छोटा सा मंडप है जिसके चार पिलर हैं।

और साइड में ग्रीन कार्पेट बिछा हुआ है।

शाम का समय है हरी हरी घास ऊगी हुई है।

और कुछ लोग साइड में --